रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा हैं जहां पे बहुत सारे लोग जाते दिखाई दे रहे हैं| ऊपर टीन का सेट डला दिखाई दे रहा हैं | बाजू में पियूसीएनएफ कि ट्रेन खड़ी दिखाई दे रही है | आजु-बाजु बहुत सारे सामान रखे दिखाई दे रहे हैं।

और साइकिले दिखाई दे रही है ऊपर टावर दिखाई दे रहा है। टावर के नीचे कुछ आजू-बाजू लाइट लगे दिखाई दे रहे है एक साइकिल खड़ी दिखाई दे रही है कुछ बाइक खड़ी दिखाई दे रही है।

व्हाइट कलर का आसमान दिखाई दे रहा है आजू-बाजू कुछ झाड़ दिखाई दे रहे है झाड़ के आस-पास अ अ एक रेल की पटरी दिखाई दे रही है जहां पे कुछ घर दिखाई दे रहे है एक कोम्प्लेक्स बना दिखाई दे रहा जिसका कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है।

यह एक रेल की पटरी दिखाई दे रही है जहाँ पे अ बहुत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं एक घर दिखाई दे रहा है घर के आसपास बहुत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

यह रेलवे ट्रेन दिखाई दे रही है ट्रेन के बहुत सारे डब्बे दिखाई दे रहे है ब्लैक कलर का आसमान दिखाई दे रहा है कुछ घर दिखाई दे रहा है घर के आस-पास कुछ सामान रख दिखाई दे रहे हैं।

आजु बाजू बहुत सारे सामान रखे दिखाई दे रहे हैं | दिखाई दे रहा है ऊपर लाइटिंग दिखाई दे रही है।

यहां एक हाईवे दिखाई दे रहा है जहां पे एक लड़की दिखाई दे रही है जो जिसका मुंह बंधा दिखाई दे रहा है एक बाइक दिखाई दे रही है बहुत सारी कार खड़ी दिखाई दे रही है ऑटो खड़ी दिखाई दे रही है व्हाइट कलर का आसमान दिखाई दे रहा है बैनर लगा दिखाई दे रहा है एक टीन का शेड डला दिखाई दे रहा है।

अ लोहे की दिखाई दे रही और कुछ स्टील के बर्तन रखे दिखाई दे रहे हैं।

और एक जमीन दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की जिसमे बहुत सारे मोती लगे दिखाई दे रहे है।

यहां एक घर दिखाई दे रहा है घर के आस-पास कुछ समान दिखाई दे रहे कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे है और कुछ दो आदमी खड़े दिखाई दे रहे है।

एक डंडा दिखाई दे रहा हैवाइट कलर की दीवाल दिखाई दे रही हैअँधेरा दिखाई दे रहा हैवाइट कलर की शर्ट पहना बैठा दिखाई--

और कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे है उम्म्म कुर्सियां रखी दिखाई दे रही है जो कि लकड़ी की दिखाई दे रही है और कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे है कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे है ऊपर ।